दृश्य में एक बहुत बड़ा सफेद रंग का बिल्डिंग नजर आ रहा है।

इस आदमी के बगल में लोहे का एक खंभा नजर आ रहा है।

इस दृश्य में कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं।

इस दृश्य में खुला मैदान नजर आ रहा है।

दृश्य में दो लोग टेबल चेयर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा समुद्र नजर आ रहा है।

समुंदर के सामने एक ब्रिज भी नजर आ रहा है।

इस दुकान के पास कुछ लोग समान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

इन लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने रखे हैं।

पेड़ पौधों के बगल में एक खाली मैदान नजर आ रहा है।

इस झरने के पीछे एक घना सुंदर जंगल नजर आ रहा है।

इस झरने के ऊपर से सूरज की रोशनी आती हुई नजर आ रही है।

दरवाजे के बगल में जो खिड़की है उसमें कुछ हरे रंग की पौधे लगी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में कुछ मिट्टी की पिरामिड बनी हुई नजर आ रही है।

इन लोगों ने बहोत सारी सुंदर सुंदर कपड़े पहने रखी है।

महल का रंग बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

इंद्र धनुष का कलर बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

बिल्डिंग में कुछ सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं।

यह आदमी दो हाथों से मिर्ची के डांडिया तोड़ रहा है।

कॉफी मशीन में कुछ कॉफी बींस रखे हुए नजर आ रहे हैं।

मशीन के पास में व्हाइट रंग के कप रखे हुए नजर आ रहे है।

ए_टी_एम मशीन के पास में एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

दृश्य में एक बहोत सुंदर गार्डेन नजर आ रहा है।

गार्डन के बगल वाले वाल का रंग सफ़ेद रंग का नजर आ रहा है।